और उते पेड़ों खड़ों ऐं।

उम्म खराब गाड़ी सही कर रहो हो। वो मशीन है। नीचे बोर्ड रखो है।

कुछी काली काली दिख रही --

टीशर्ट पहन ली है। इयरफोन कान लगाये है। उधर एक लड़की खड़ी है। खड़े हैं उधर।